ए.टी.एम है ए.टी.एम में तीन सीट सेट लगा हुआ हैए.सी के दो आउटडोर सीट के ऊपर ही रखे हुए हैं एक बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है।